बहुत सारे बुक्स को देख सकते हैं और यहाँ पे चेयर को देख सकते है।

खड़े है यह हम देख सकते है और एक बंदा सामने देख रहे है और --

एम्प्लॉएंस अपना-अपना काम कर रहे है और उसके सामने हम बहुत सारे कुर्सियाँ देख सकते हैं और मतलब --

हम इस चित्र में ये देख सकते है की एस.बी.आई. बैंक का ए.टी.एम. देख सकते हैं |

योगा कर रहे है और उसके बीच मे गुरु उनको सीखा रहे है की कैसे योगा करना है।

उसके अंदर बहुत सारे लोग खेल रहे हैं और उसी के बाजू में हम हरी-भरी बड़े-बड़े --

अ दुकान के बगल में अम्म एक कोटेक बैंक को --

हम इस चित्र मे एक बड़ा-सा टेबल देख सकते है और उसके ऊपर एक लाल कपडा देख सकते है।

और उसके अंदर सफ़ेद मुर्गी देख सकते है और काले मुर्गी देख सकते है।

हम इस चित्र में बडा सा --

को यहाँ पे देख सकते हैं --

और क्रीम बहुत सारे चीजे डेस्क पे है |

एक बड़ा सा हरा भरा जंगल को देख सकते है |